मोज़िला फायरफॉक्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम इनके बारे में सीखेंगे टैब्ड ब्राउज़िंग ऑफलाइन कंटेंट को सेव करना पॉप अप अवरूद्ध करना पॉप अप ब्लोकिंग
इस ट्यूटोरियल में हम उबंटु 1004 पर फायरफॉक्स वर्जन 70 का उपयोग करेंगे
मोज़िला फायरफॉक्स आपको एक ही ब्राउज़र विंडो में भिन्न टैब्स में विभिन्न वेब पेजस को लोड करने की अनुमति देता है
टैब्ड ब्राउज़िंग का सबसे बड़ा फायदा है कि यह कई ब्राउज़र विंडोज को प्रदर्शित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है
और इसलिए यह आपके डेस्कटॉप को अनावश्यक चीजों से मुक्त रखने में मदद करता है
प्रत्येक टैब ब्राउज़र के संपूर्ण दिखने वाले क्षेत्र को कवर कर लेता है जब प्रदर्शित होता है
यह खुले ब्राउज़र विंडो का लगातार आकार बदलने और खिसकाने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है
टैब्ड ब्राउज़िंग टाइल्ड विंडो ब्राउज़िंग से कम मैमरी और ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधनों का उपयोग करता है
हाँ लेकिन उपयोगकर्ता द्वारा कई टैब्स न खुलें हों
मानिए कि आप एक विशेष वेबपेज पर हैं
यहाँ लिंक है फायरफॉक्स फोर डेस्कटॉप
आप इस लिंक को एक नये टैब में खोल सकते हैं
यह करने के लिए लिंक पर राइट क्लिक करें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ओपन लिंक इन न्यू tab पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि उसी ब्राउज़र विंडो में मौजूदा टैब की दायीं ओर एक नया टैब खुलता है
अतः अपने विंडो को बंद किए बिना या हटाये बिना आप उसी विंडो में अन्य नया वेबपेज खोल सकते हैं
इसके लिए शार्टकट कीज़ हैं CTRLT ध्यान दें कि जब आप नया टैब खोलते हैं तो नया टैब तुरंत सक्रिय हो जाता है
अब उर्ल बार यूआरएल बार पर जाएँ और wwwgooglecom टाइप करें
अब आपके पास प्रत्येक भिन्न वेबपेज के साथ तीन टैब्स होंगे
आप दायें टैब की दायीं ओर के बटन पर क्लिक करके एक नया टैब भी खोल सकते हैं
हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भी टैब्स को व्यवस्थित कर सकते हैं
टैब पर क्लिक करें और माउस बटन को छोड़े बिना इसे आवश्यक स्थान पर ले जाएँ
अब माउस बटन को छोड़ दें
टैब अब इच्छित स्थान पर है
चलिए कुछ बुनियादी ऑपरेशन्स देखते हैं जिनकी मोज़िला फायरफॉक्स हमें करने की अनुमति देता है
चलिए सर्च एंजिन गूगल में बदलते हैं
सर्च बार में इमेल विकिपीडिया टाइप करें सर्च बार की दायीं ओर मैग्निफाइंग ग्लास मैग्निफाइंग ग्लास पर क्लिक करें
संबंधित विकिपिड़िया पेज पहला खोज परिणाम है
लिंक पर क्लिक करके इस पेज को खोलें
अब फाइल पर क्लिक करें और फिर सेव पेज एएस पर क्लिक करें
searchएचटीएमएल नाम से डेस्कटॉप पर फाइल सेव करें
अब फाइल और न्यू Tab पर क्लिक करके ब्राउज़र विंडो में नया टैब खोलें
अब इस नये टैब विंडो में अपना सेव किया हुआ पेज खोलें
फाइल और ओपन फाइल पर क्लिक करें
ब्राउज करें और सेव की हुई फाइल को खोलें
उर्ल बार में आप देखते हैं कि पता एक इंटरनेट पता नहीं है किन्तु आपके कंप्यूटर पर एक लोकल लोकेशन है
अब आप इस पेज को पढ़ सकते हैं यहाँ तक कि जब आप ऑफलाइन हों
pop अप्स विंडोज हैं जो आपकी अनुमति के बिना अपने आप दिखाई देते हैं
फायरफॉक्स प्रेफरेंस विंडो में कंटेंट tab कंटेंट टैब के माध्यम से हमें pop अप्स और pop अंडर्स दोनों को नियंत्रण करने की अनुमति प्रदान करता है
विंडोज में यह ऑप्शन विंडो में होगा
डिफॉल्ट रूप से pop यूपी ब्लोकिंग शुरू होती है
एडिट और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
विंडोज उपयोगकर्ता कृपया टूल्स और आप्शंस पर क्लिक करें
कंटेंट टैब में डिफॉल्ट रूप से पहला ऑप्शन ब्लॉक pop यूपी विंडोज चुना हुआ है
यदि नहीं है तो कृपया इस ऑप्शन का चुनाव करें
इस डायलॉग बॉक्स के विविध ऑप्शन्स के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में चर्चा करेंगे
क्लोज बटन पर क्लिक करें
अब हम ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं
यहाँ हमने जो सीखा उसका त्वरित सांराश है
टैब्ड ब्राउज़िंग ऑफलाइन कंटेंट को सेव करना पॉप अप अवरूद्ध करना पॉप अप ब्लोकिंग
यह नियत कार्य करने की कोशिश करें
एक नया टैब खोलें
सर्च एंजिन को गूगल में बदलें
थे हिस्टोरी ओएफ इमेल के लिए सर्च करें
पहले परिणाम को सेव करें और एक ऑफलाइन डॉक्युमेंट के रूप में देखने के लिए इसे नये टैब में सेव करें
सर्च एंजिन को बिंग में बदलें
फिर से थे हिस्टोरी ओएफ इमेल के लिए सर्च करें
हिस्टोरी ओएफ इमेल एएमपी रे टॉमलिंसन लिंक को सेव करें और एक ऑफलाइन डॉक्युमेंट के रूप में देखने के लिए इसे नये टैब में सेव करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद